और अंदर में बहुत सारा सामान चीज रखा हुआ है।

वाला और दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

और टेबल में बहुत सारा चीज है जैसे पानी बोतल और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी है।

अ वॉशरूम में यूज करने वाला वो पाइप भी दिखाई दे रहा--

कि ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है।

और आसपास में पार्डल दिखाई दे रहे--

फ्लोर को ब्लू वाला फ्लोर को भी दिखाई दे रहा है।

और उसका सामने में एक ठो बांस दिखाई दे रहा है यलो कलर का।

इसमें बहुत सारा घास लोग भी है।

पीछे में खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

उपर में फैन भी दिखाई दे रहा और आसपास में लाइट बल्ब भी दिखाई दे रहा--

इसमें बहुत सारा टेबल लोग रखा हुआ है।

और अंदर में बंबू से वो करके हैं बंबू का पिलर लेकर है।

में बहुत सारा बोट दिखाई दे रहा है अलग अलग रंग का।